एक बहुत बड़ा मकान के अंदर योग कर रहे हैं।

थ्रेलिंग दिख रही है पीछे एक बहोत बड़ा मका मकान या क्वार्टर है।

यहां बहोत सारे लोग हैं जो की एक बिल्डिंग के अंदर गए हैं और कुछ कुछ समान खरीद रहे--

यह एक बड़ा सा तालाब है जहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं और--

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां एक बड़ा सा शॉप है जिसका नाम डी मार्ट है यहां बहोत सारे लोग हैं जोकि सामान खरीद रहे हैं।

पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है बहोत सारे पत्थर हैं चट्टानें हैं।

और एक आदमी दिख रहा है जोकि अच्छा नहीं दिख रहा--

वो भी छोटा छोटा पौधा जो बहुत अच्छा दिख रहा है।

बगीचा है जहां रात का समय है।

जूते चप्पल का बॉक्स दिख रहा है।

यह एक कपड़े का दुकान है जो बहुत बड़ा है और सामने चार डमी है जो साड़ी पेहनी हुई है।

बहुत बड़े बड़े चिड़िया हैं जिसको--

यह एक बगीचा है जिसमें बहोत सारे--